ये वो मर्दाना है काला चस्मा लगयले है हाथ मोड़ के खड़ा है ये वो बस है।

दुकान है बिस्कुट है लेमन चूस है ओकरा में निन्यानबे रुपया लिखल है चॉकलेट